मान हमे दिख रहा है। यहा पर अ अ मज़े करने की कुछ चीज़े दिख रही है। खेलने की जिसके साथ आप आनंद ले सकते है।

इस पिक्चर में हमे पीछे पीछे की तरफ पेड़ दिख रहे है। और पेड़ हमे बहुत बड़े - बड़े दिख रहे है।

मोती है। यहां पर और वहा पर बहुत सारी चीजे है। अ कलर की कलर कलर की चीजे है। यहां पे बैठने के लिए भी जगह है। और अ यहाँ पे हमे एक लाइट दिख रही है।

यहां पे ब्लू ऑरेंज रेड वाइट पिंक कलर की बॉल भी रखी हुई है। और भी क्रिकेट का बहुत सारा सामान रखा--

पेन ते पेंसिल लिख रहे है। सबके हाथ में अलग अलग पेन है। पेपर पे वो लोग लिख रहे है।

हिरन बहुत ज़्यादा है। इसमें और पीछे बोहत सारे पेड़ है। इधर आ ओं आसमान इसमें पिक्चर में नहीं दिख रहा है।

जाली बनी हुई दिख रही है इस पिक्चर में और यहाँ पे फुटपाथ भी बना हुआ है। और ट्रक आ रहा है। रिक्क्षा दिख रही है। गाडी दिख रे--